एक पे लड़का है। जो कि कुर्ता पहना हुआ है। बगल में बहुत सारे आदमी है। जो की देख रहे हैं। बहुत सारे नहा रहे हैं। पूजा कर रहे हैं घूम रहे हैं।

केशव आर्यालय आश्रमिक आश्रम है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिख रहा आगे में एक काउंटर भी लगा हुआ है जो कि पीला कलर का है।

यहां पर बहुत सारे सामान मिलते हैं बहु एक माल है ये।

नृत्य कर रहे हैं एक साथ एक स्टेज बना हुआ है जिस पर लेडीज लोग तीन लेडीज लोग डांस कर रही है।

बहुत सारे खाने के समान बहुत सारे मसाले बहुत सारे कुरकुडे धराये हुए हैं।

और नीचे में एक दर्री बिछाया गया है जो की लाल और छिट कलर का है।

आगे मैं बस भी खड़ी है एक व्हील चेयर लगा हुआ है।

बहुत बड़ा कॉलेज है आगे में हरा भरा बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

ऊपर से पोटो लिया गया है जो कि आदमी लोग काम कर रहे हैं ।

अन्य प्रकार के छोटे छोटे नल मिलते है यहां पे गीज़र ।

आगे में पानी का ड्रम भी है जिसमें बहुत सारी जिंदी मछली है यहां पे लगभग चार आदमी है जो की मछली काट कर बेच रहे हैं।

आगे में पीला और लाल कलर का दीवाल से घेरा गया है आगे मे भी इट के बहुत सारे टुकड़े है गिट्टी है।

लड़की के पास एक आदमी है जो टाई पहना हुआ है।

इस साइड छोटे छोटे साइकिल परफ्यूम और बहुत टेडी बियर जैसे सामान धाराएं हुए हैं एक चेयर भी है यहां पर।

लाइन कनेक्शन है। बहुत सारे मशीन धराये हुए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे उपकरण धराये हुए है।

बहुत ही अच्छी लाइटिंग कर रहे हैं यहां पे बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं।

उन्टर भी बना हुआ है। लाइटिंग बहुत अच्छी है।